तीन चार लाइट दिखाई दे रही हुई हैं।

नीचे कुछ टाइल्स वगैरह और उन कथई कलर का कलर पूत रहा है।

अेेेे एक जेब में जेन्स खड़ हाथ डाल कर खड़ा हुआ है।

तीन जेंट्स एक लड़की खड़ी हुई है।

दो-ब जेंट्स के पैर दिखाई दे रहे हैं।

ए उसमे और कुछ रख रीवु हैं।

बाजु में एक पेड़ खड़ा हुआ है।

एक बाइक खड़ु है सफ़ेद कलर की।

झा रही मिट्टी पड़ी हुई है। --

दूकोपटर पे है। दूकोपटर ब्लू कलर सफ़ेद कलर दिखाई दे रहा --

नाम लिखा हुआ है। ये स्टेशनरी का स्टोर लिखा हुआ है।

बोर्ड लगा ऊपर दुकान के एक --

उसपे कलर पूता हुआ हैं।

सफ़ेद सफ़ेद कलर कलर पुत रहा है और --

डस्टबिन में कुछ डाल रहा है।

बिल्डिंग उसपे ग्रीन कलर कलर पुता। एक पेड़ खड़ा हुआ --

एक लेडीज जहाँ कलर की हाथ में कंगन पहने हुए है।

फ्रीज़ में फिरिंडा रखा हुआ है।

रामचन्द्र अम्म महाविद्यालय स्कूल दिखाई दे रहा है।

हीरो होंडा गाड़ी है। एक जेंट्स स्कूल के अंदर जा रहा --